ये गोरखपुर का विकास भवन है यहां तरह-तरह की मीटिंग होती हैं।

ये किसी रेसट्रोरेंट या होटल का सीन है। जहाँ पे लोग हल्का पुलका नास्ता करना हो या भोज़न करना हो उसके लिए आते हैं।

यहां बहुत सी बड़ी-बड़ी मशीनें हैं बहुत सारे लोग कार्यरत होते हैं।

ये यहाँ पे अभी भी कुछ निर्माण का काम चल रहा है।

ये गोरखपुर की हरिओम नगर में स्थिर बेक बक बेक ब्राउन नाम का रेसटोरेंट है।

यहाँ पे बड़े बड़े मशीन लगाये गये हैं जहाँ पे लोग आ के सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं और अपनी बॉडी को सुंदर शेप देते हैं। यहाँ पे ट्रेनर होते हैं जिम ट्रेनर होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं।